इधर पे एक दिख रहा है के अंदर बहुत सारे बैठने के लिए जगह है के बाहर कुछ बाइक खड़ा है।

दूर में एक स्टेचू दिख रहा है स्टेचू बहुत सुंदर है स्टेचू के आस-पास कुछ लैंप पोस्ट है।

फ्लोर पे कुछ ईंट का टुकड़ा पाइप का टुकड़ा बहुत सारे चीज दिख रहा हैं।

इधर पे एक कैनरा बैंक की ए.टी.एम. है ए.टी.एम. अब ओपन है ए.टी.एम. के अंदर एक दिख रहा है सामने।

दो पास में कुछ लड़की है और एक पास में कुछ लड़का खड़ा है सामने में कुछ पेड़ हैं।

बहुत बड़ा-बड़ा विंडो दिख रहा हैं में एक गेट भी है।

दो फैन दिख रहा है एक बड़ा सा टी.वी. है एक ए.सी. मशीन है बहुत सारा लाइट्स जल रहा है।

इधर पे एक रास्ता दिख रहा है रास्ता की पास में एक बड़ा-सा गेट है ये एक स्कूल गेट है इसके अंदर एक बड़ा-सा स्कूल दिख रहा है।

एक महिला दिख रहा है कुछ लोग खड़ा है बहुत सारे बाइक स्कूटी खड़ा है इधर पे रोज बहुत भीड़ होती है।